और ये नीचे हरे हरे कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

साइड आजू बाजू में हरे घास पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

इस पिक्चर में दिखाया गया कि कुछ पेड़ हरे हरे दिखाई दे रहे हैं और कुछ जानवर यहां पे खेल रहे हैं।

जिसमें वह राख हो रखी हैं और साइड में कुछ लिक डे पड़े हुए हैं।

और यहां पर शानदार लाइटिंग भी करी गई है।

इस पिक्चर में दिखाया गया है यहां पे एक अलग ही भाषा का एक--

इस पिक्चर मे दिखाया गया या पे एक सिल्वर ज्वैलर्स के नाम से--

और ये होटल का रिसेप्शन दिख रहा है यहां पे एक--

बहुत सारे अलग अलग सिलेब्स सब्जेक्ट की पुस--

एक यहां पे पिक्चर में दिखाया गया है कि यहां पे हरे पर्दे में कुछ सामान रखा गया --

इस तस्वीर में दिखाया गया है यहां एक--

इस तस्वीर मे दिखाया गया है यहां पे जिम ट्रेड का काम चल रहा है और यहां पे कुछ ये डंबल्स वगैरा भी रखे गए।